बटरा सा कुछ है और नीचे वाइट कलर का सीढ़ी है जिससे यात्री को जाने में दिक्कत ना हो।

बहोत सारे कपड़े लटके हुए हैं बहोत सारे इलेक्ट्रिकल सामान है जिससे बल्ब बनाने में सहायता की जाए आगे एक वॉच लगा हुआ है और ऊपर एक फैन लगा हुआ है नीचे दो चेयर लगा हुआ है।

ये आर लॉन्चेस है| इसके प्रकार इसके अंदर सभी प्रकार की क्रीम लांच किया जाता है।

जैसे एन.सी.ई.आर.टी. भारतीय भवन अदर प्रकार के बूक मिलतें हैं। साइड में बहुत सारे आदमी हैं जो बुक के दुकान के आगे खड़े हैं।

ये बतख पालने का मॉल है ये बतख पालने का जहाँ पे बतख बोहोत सारे है चर रहे हैं।

साइड में कुछ रिंग्स दिखाई पड़ रहा है और साइड में ये बच्चों के खेलने के लिए कुछ टेप टेप के बने हुए हैं और नीचे कुछ हरा-भरा घास है।